जो इसके नीचे में पानी दिखाई दे रहा है।

दुकान का अंदर में बहोत सारा कार्टून दिखाई दे रहा है।

एक शू भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक सुंदर सा गार्डन दिखाई दे रहा है।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

यह ये तस्वीर में बहोत सारा घर दिखाई दे रहा है।

और दो फैन दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में बहुत सारा गमला दिखाई दे रहा है।

एक कुकर भी दिखाई दे रहा है।

मुझे ये तस्वीर में एक बिस्तर दिखाई दे रहा है।

बिस्तर के ऊपर में बेडशीट दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में बहुत सारा चेयर्स है।

फोटो फ्रेम भी दिखाई दे रहा है।

पानी बोतल भी दिखाई दे रहा है।

दूकान के अंदर में और ग्रीन कलर के एक कारपेट है।

एक लैपटॉप भी दिखाई दे रहा है।

लस्सी भी दिखाई दे रहा है।

हमें भी दिखाई दे रहा है।

तो बहुत सारा स्टेच्यू भी दिखाई दे रहा है।

और पीछे में बहुत सारा घर दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।